इसका कलर रेड एंड गोल्डन है इसकी पीछे एक और घोड़े गाड़ी है जिसका कलर रेड है उसे नीली पन्नी से ढका हुआ है।

फूलों के बीच में ये खाली जगह है और छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं।

और इसके सामने एक खंभा लगा है जहां पे लाइट लगी है इसके चारों ओर जाली लगी है और साथ ही दरवाजा भी--

बाहर एक एक बहोत बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है मकान का कलर वाइट हैं और इस के सामान से एक रोड जा रही है।

गुब्बारों से डेकोरेट किया गया है और अंदर के साइड में--

घर के अंदर थोड़ा सा सामान रखा हुआ है जैसे मयूर जग ।

कुछ लोग साइड में खड़े हैं कुछ लोग सामने खड़े हैं एक आदमी लूंगी में खड़ा है और काफी सारे छोटे छोटे बॉक्स रखे--

और किनारो में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

आगे ब्राउन कलर के सोफे हैं पीछे लोग जा रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए भी हैं।

पारक से बाहर आ के बाउंड्री बनी हुई हैं बाउंड्री के बाहर एक बड़ा सा पेड़ है।

इसके पीछे स्कूटी के काफी सारे पोस्टर लगे हुए है।

ये एक स्टोर रूम जैसा है यहां पे दो गद्देदार कुर्सियां और पीछे काफी सारा समान बिखरा हुआ है।

और आजू बाजू लकड़ी की दरवाजे और खिड़कियां हैं।

साथ ही में सामने एक शीशा लगा हुआ है जहां पे लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।